ये घर में बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड एरिया बनाया गया है यहां पर बहुत ज्यादा कलर यूज़ किया गया है यह देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जे लड़का थोड़ा मोटू है और यहां पर बहुत ज्यादा बाल मेसी --